थर पर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इसके पीछे एक डी_जे लगा हुआ है।

पेट्रोल पंप में दो कार दिखाई दे रहे हैं तथा साइड में एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

हर बिल्डिंग के छत को लाल रंग की छावनी दी गई है।

बिल्डिंग के सामने एक सिक्स वेपर लाइट लगाया गया है।

पर सूर्य लाल रंग का दिखाई दे रहा है।

हां एक सफेद रंग के प्लेट में बिरयानी को निकाला गया है।

यह एक शॉपिंग मॉल का दृश्य है जिसका नाम बिग बाज़ार तथा वायरे है।

दोनों स्टीकर पर फ्लैट पचास परसेंट ऑफ लिखा हुआ है।

आदमी बैठा हुआ है जबकि दो आदमी खड़े हैं ।

दुकान के दरवाजे को शीशे द्वारा बनाया गया है।

दरवाजे के ठीक सामने दो पुतले लगाए हुए हैं।

ये घीयाही रंग से पेंट किया गया है तथा यहाँ पर एक सफेद रंग का पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पर छे बैनर लगाए हुए है तथा सभी बैनरों के ऊपर एक घड़ी भी लगाई गई हैं।

टॉवर के सामने दो अन्य बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर पानी से जुड़े हर सामान रखे हुए हैं तथा इस दुकान को सफेद रंग से पेंट किया हुआ हैइस दुकान के ऊपर चार शीशे तथा एक घड़ी भी लगाई गई है।

इसके सीलिंग में बहोत सारी सीलिंग लाइटें भी लगाई गई है जिससे सारे सामान की उपलब्धता दिखाई दे रही है।

यह एक नल बेसिंन एवं पैन इत्यादि की दुकान है ।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

घर में एक महिला प्रवेश भी कर रही है तथा उस महिला के हाथ में एक लेडिस पर्स भी है।

इसके हाथ में कुछ खग रखे हुए हैं।

ऊपर एक बोतल पानी भी रखा हुआ है इस हॉल में दो ए_सी लगा हुआ है तथा एक पंखा लगा हुआ है सोफे के पीछे एक स्लैब भी बनाया गया है।

गुलाबी रंग से पेंट किया गया है तथा इसका दरवाजा सफेद रंग का है।

इस बिल्डिंग में दरवाजे के पास मछली घर लिखा हुआ है।

हवाई अड्डा में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

इनके पीछे सात मैट दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान की आज सफाई की गई है तथा फूलों द्वारा सजावट भी की गई है।

पहाड़ के नीचे हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं तथा एक तालाब भी दिखाई दे रहा है।

यह एक ऑफिस का दृश्य है जहां पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

दीवाल पर दो बैनर भी लगाए गए हैं।

और ये शीशे कुर्सी के ठीक सामने लगे हुए है।

और दो बड़े बड़े लोहा का गेट भी लगा हुआ है।

बाउल के सामने बहुत सारे हर भरे पौधे तथा पेड़ भी--

भवन के बाउंड्री में एक बहुत बड़ा तार का भी पेड़ दिखाई दे रहा है।